उपर भी देख सकते है कितनी मूर्ती है और ये जंगलो के बीच मे रखी गई है इसलिए काफी पुरानी ये मूर्ती आपको दिखाई दे रही है।

पानी इतना दूध दूध के जैसा पानी दिखाई दे रहा है।

एक कुआ है और कुआ पे आप देख ही सकते हो कुआ है कुआ के पीछे आपको जो है जंगल ऐसा दिखाई दे रहा है जंगल भी है और इसके अलावा जो है आप देख सकते है की पेड़ है।

हा है और इसमे आप देख सकते है की काफी साफ़सुथरा है ब्रिज और पीछे तो आप देख ही सकते है की कितना आप साफ़सुथरा है और सबकुछ इतना अच्छा आपको दिया हुआ है पानी नही है बाकी--

इसमे सड़क है सड़क के पीछे आपको यहा देख सकता की जंगल ऐसा बना हुआ है। जंगल के अलावा इसमे आप देख सकते हो की --